एन् आसमान दिख रहा है एन ग् अ पेड़ दिख रहा है बरा -बरा । छोटे-छोटे घास ए पत्ते है।

सब हरा कलर का दिख रहा है। घास दिख रहा है ईट दिख रहा है एंड पानी है छोटा सा जगह में एंड चेयर दिख रहा है लाल कलर का --

मत सरस जगह है पेड दिख रहा है एंड सफ़ेद रगं का बाड़ी दिख रहा है|

दसरा है फिर दसहरा हुआ है बहोत सारा है यहाँ पे है यहाँ पे बोहोत सारा लाइट लगा हुआ है।

मास्क पहन के यहां पर डॉक्टर है। सिस्टर है। मास्क पहने हैं हाथ में ग्लास पहना हुआ है एण्ड बोहोत सारा लोग हैं। आदमी हैं। महिला है। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है कुछ।

यह पे गेट दिख रहा है। बहोत सारा दरवाजा है। यहाँ पे कल्स दिख रहा है।

एक बड़ा सा गेट (gate) दिख रहा है। सफेद रंग नीले रंग का है यहाँ पे गेट दिख रहा है एक गाड़ी रखा हुआ है। एक छोटा सा घर है।

ट्वीइलाइट दिख रहा है लाल कलर का यहाँ पे लिखा है कुबेर धाम लिखा है यानि इसके भीतर में बहुत सारे अंदर में बहुत सारे ए बाइक लगा हुआ है एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है।

पार्क में बोहोत सारा लड़का यहाँ पे खेल रहा है। बच्चे लोग यहां पे क्रिकेट खेल रहा एण्ड --

ये हेंकर है। यहाँ पे बहुत सारा लोग यहाँ पे बिक रहा है। यहाँ पे खरीद रहा है बहुत सारा लोग अ आदमी लोग यहाँ पे लड़का लोग है यहाँ पे बहुत सारा फूल का मार्केट है और बहुत फूल बिक रहा है यहाँ पे रजनीगंधा जुई है बहुत सारा माला है।

नेता मंत्री का यहाँ पर कार दिख रहा है मतलब पुलिस दिख रहा है। यहाँ पर बहुत सारा आदमी खड़ा है महिला खड़ा है।